जिसमें हाथ में फ़ोन लिए सामने की ओर देख रहा है।

यहाँ पर बच्चे बड़ी ही जोश के साथ एक नित्य कर रहे हैं जिसमें एक लड़की पीछे की ओर --

और कुछ पत्थर के पीसेस विभिन-विभिन जगह पर रखे हुए हैं। देखने में दृश्य बोहोत सुन्दर है।

ये है बार्की और किसी कार्यस्थल की पार्किंग बनी हुई है जहां पर बहुत सारी मोटरसाइकिल एवं कार खड़ी हुई हैं।

यह तो बहोत ही सुंदर इमारत बनी हुई हैं। इमारत के बाहर एक बहोत बड़ा मैदान बना हुआ है इस मैदान में --

दृश्य है। जहां पर उसने बहुत ही सुन्दर मिठाइयां एवं नमकीन एवं दाल चना रखा हुआ है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहाॅं पर यहाॅं पर बौद्ध की बहोत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई हैं जोकि एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं।

इस मुद्रा को संस्कृत भाषा में बोहोत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है।

यह तो किसी का मॉल का फोटो है। जिसमे विभिन्न -विभिन्न प्रकार के वस्तु रखे हुए हैं कुछ वस्तु बिना पैकेट के और कुछ पैकेट के अंदर --